वाव गजानन बहुत ही सुंदर लग रहे है लग रहा है आज सभी लोग इनके साथ में इंजॉय भी कर रहे है। नहा रहे है और दूसरा आदमी देखो उनको केेसे नहला रहा है एक ऊपर बेेठा हुआ है यार नीचे उतर जा --

माता की भक्ति में सभी को रंम जाना चाहिए। नवरात्री है नवरात्रों में नौ दिन श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए माता के लिए और माता को अपना आधे से ज्यादा जीवन समर्पित करना चाहिए।